बिकने का ठेला है मतलब शेक के साथ यहाँ कुल्फी भी मिलता है।

म् अपने सामने एक दृश्य देख रहे हैं। इस दृश्य में एक नृत्यकार है जो नृत्य कर रहा है।

और बहुत खूबसूरत- सी फूल पौधे की पत्तियाँ अगल -बगल गमलों में लगाई गई है एक अलग ही दृश्य है ये --

दूर-दूर तक बड़े खेत की तरह दिखने वाला ये जगह जिसे चारों तरफ से बड़े -ड़े पेड़ो से घेरा गया है।

और मैदान काफी बड़ा और खाली है। ये इसे तैयार किया गया है एक मैच के लिए फिलहाल अभी मैच यहाँ शुरू नहीं किया गया है।

यह कुछ और नहीं बल्कि यह ज़ेबरा है।

इसे देख के हम बात सकते है की ये बिकने के लिए बाजार लाया गया हुआ है।

बैंक ऑफ बरोदा जी हाँ यही बैंक ऑफ बरोदा का दृशय हम अपने सामने देख रहे हैं।

हम अपने सामने कुछ लोग को एक पैर पे खड़े होते हुए देख रहे ये सब यहाँ योगा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं।

एक वेल्डिंग करते हुए भईया को देख रहे है जो एक कार के आगे वेल्डिंग कर रहा है।

बच्चे इकटठे हुए हैं ग्राउन्ड में --

पर इसकी सुंदरता काफी खूबसूरत है देखने मे। हम इसके ऊपर बोहोत सारे लोग को देख रहे है जो यहाँ घूमने के लिए इस किला का दृश्य उठाने के लिए आए हुए हैं।

बौद्ध जी की मूर्ति बीच मे स्तापित है।

यह जो दृश्य हम देख रहे है ये शाम के समय का दृश्य है सूरज डूबता हुआ।